पतैलिया दिखाई दे रही हैं साइड में एक आदमी एक कढ़ाई में कुछ पकाता हुआ नजर आ रहा हैं।

तह करके हैंगर में बहुत सारे टी-शर्ट लगे हुए हैं।

ये एक मुन्सी पालटी दिखाई दे रहा है।

मंदिर की गु गुंबद भी दिखाई दे रही है।

घर का गेट दिखाई दे रहा है जिसमें से कुछ लोग अन्दर आ रहे है कुछ लोग बाहर जा रहे है बहोत सारी साइकिलें रखी हुई है।

घर के सामने दो बाइक खड़ी हुई हैं।

प्याली खाली रखी हुई है प्लेटों में चावल वगैरह रखे हुए हैं प्लेटों में चमचे दिखाई दे रही है।

ये एक इवेंट का हॉल दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

सामने एक घर बना हुआ है घर के नीचे दो होटल दिखाई दे रहे हैं।

इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है उसमें एक ट्रक दिखाई दे रही है होटल में बहुत सारी पतेलियाँ दिखाई दे रही हैं।

एक बाइक आती हुई दिखाई दे रही है उसके पीछे एक जीप जाती हुई दिखाई दे रही है।

पुल पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं पीछे बहुत सारे दरख्त दिखाई दे रहे हैं।

रिजर्व लिखा हुआ है एक आदमी खड़ा हुआ है जो फोन पे बात कर रहा है।

झूले लगे हुए हैं फिसलखुंडी बनी हुई हैं।

ये नर्सरी नजर आ रही है इसमें बहोत सारे फ्लावर पॉट रखे हुए हैं।

उसपे ए_ डी_ साड़ी शोरूम लिखा हुआ है नीचे एक दो दुकानें दिखाई दे रही है।

यहां कुछ लोग पेट्रोल भराते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी बाइके दिखाई दे रही है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।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

बहुत सारी मछलियाँ दिखाई दे रही हैं मरी हुई।

एक बस खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एक जीप खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पेशेंट के बेड दिखाई दे रहे हैं।

टेबल के ऊपर प्लेटें रखी हुई हैं।

एक बड़ी सी टी_ वी_ भी लगी हुई है।